जिसके बाहर साइड बहोत सारी घंटी लगी दिखाई गई है मंदिर के खंभे डेकोरेट किए दिखाए गए हैं।

कांच के फर्नीचर लगे हुऐ हैं कूलर रखा हुआ है ऐ.सी. लगी है।

बादलों के कलर अ नीले लाइट कलर में ब्लैक कलर में ब्लू वाइट --

इस इमेज में एक डाक घर को दिखाया गया है डाकघर क बहार बहोत सारे लोग एक साथ खड़े दिखाए गए हैं।

इस इमेज में चिड़ियाघर की इमेज दिखाई गई है।

इस इमेज में एक बिल्डिंग बनते दिखाए गयी है बिल्डिंग में सेंटिंग लगी दिखाई गयी है।

आईपेड्स एजुकेशन लिखा हुआ है।

पत्थरों के ही अंदर मूर्ति की कटिंग दिखाई गई है।

इस इमेज में बहुत सारी स्लाइट एक साथ एक गार्डन में दिखाई गयी है रेड ग्रीन ब्लू ।

पुस्तक भंडार दिखाया गया है।

किनारे पर लगे हुए हैं सामने की तरफ।

इस इमेज मे एक नदी की इमेज दिखाई गयी है।

कागज से कुछ बनाते हुए दिखाए गए --

हरी घास का खेत दिखाया गया है।